java में method overloading method overloading पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
method overloading क्या है
और method को overload करना क्या है
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए
मेथड कैसे बनाएँ और
eclipse का उपयोग करके java में overload constructor कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई हमारी website पर जाएँ http:// www spokentutorial org
method overloading क्या है
class में समान name के साथ दो और दो से अधिक methods परिभाषित करें
वे संख्या या parameters के प्रकार में भिन्न होते हैं
इन मेथड को overloaded methods कहते हैं
इस प्रक्रिया को method overloading कहते हैं
अब देखते हैं कि मैथड़ को overload कैसे करें
eclipse में मेरे पास addition class है
class के अन्दर हम दो integer variables घोषित करेंगे
अतः type करें int a is equalto 10 and int b is equalto 5
इन दो integers को जोड़ने के लिए एक method बनाएँ
अतः type करें void add parentheses
curly brackets में type करें system dot out dot println
parentheses में a + b
अतः यह method हमें दो integer variables का योग देता है
एक अन्य method बनाएँ जो दो parameters let है
अतः type करें void addtwonumbers
parentheses में int num1 comma int num2
फिर curly brackets में system dot out dot println num1 plus num2
अतः यह method हमें दो values का योग देगा जो इस method में arguments के रूप में पास किए गए हैं
class का एक object बनाएँ और methods को कॉल करें
अतः main method में type करें addition जो class का name है obj is equalto new addition parentheses semicolon
फिरobj add
और obj addtwonumbers parentheses में
हम दो arguments pass करेंगे
मानिए यदि हम floating प्वॉइंट values pass करते हैं
तो type करें 25 comma और एक integer 3
हमें एक error मिलती है जो कहती है the method addtwonumbers int comma int of the class addition is not applicable for the argument double comma int
अतः हम क्या करेंगे कि method में int के बजाय हम double देंगे
अतः int को double में बदलें file so करें
हम देखते हैं कि error ठीक हो गई है
हम यह भी जानते हैं कि java स्वतः int को double में बदलता है
अतः यहाँ हम एक integer arguments भी pass कर सकते हैं
अब program को सेव और now करें
output में sum दो integer variables का योग देखते हैं
और दो numeric arguments का योग जो हमने passed किए
अब हम देखते हैं कि दोनों मेथड समान operation क्रियान्वित करते हैं
भिन्नता यह है कि पहले method में कोई भी पैरामीटर नहीं है जबकि दूसरे method में parameters हैं
अतः इस तरह के cases में java हमें method overloading के साथ प्रदान करता है
अतः हमें यह करना है कि दोनों methods को समान name देना है
अतः addtwonumbers को add में बदलें और यहाँ भी बदलें
हम समान operation के साथ एक और अधिक method परिभाषित करेंगे
अतः type करें void add
और parentheses में int n1 comma int n2 comma int n3
अतः हमने तीन parameters दिए हैं
एक curly brackets में system dot out dot println
parentheses में n1 plus n2 plus n3
अतः यह method तीन numbers का योग देगा
इस method को कॉल करें
अतः type करें obj dot add 1 comma 5 comma 4
सेव और run करें
output में sum तीन number का योग अर्थात 10 देखते हैं
अतः java compiler parameters पर आधारित सही method को overloads करता है
यह passed किए गए पैरामीटर के प्रकार और number की जाँच करता है
अतः programmer के रूप में हमें method के name से घबराना नहीं चाहिए
न ही हमने number या arguments का प्रकार passed किया है
हम एक अन्य method बना सकते हैं जो strings से जुड़ा हो
अतः हम एक और overload method बनायेंगे
type करें void add string s1 comma string s2
curly brackets में system dot out dot println
parentheses में s1 plus s2
और हम इस method को कॉल करेंगे
अतः type करेंobj dot add
parentheses के अंदर double quotes में hello comma double quotes में space world
अब program को सेव और now करें
अतः output में हम देखते हैं hello space world
अतः दो string arguments के साथ add method string से जुडता है
मानिए कि add हम return type के साथ add method घोषित करते हैं
अतः type करें int add parentheses no parameter और curly brackets
हमें एक error मिलती है यह कहती है duplicate method add in type addition
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने बिना parameters के साथ add method पहले ही घोषित किया है
अतः ध्यान दें कि मेथड ओवरलोड करने के लिए पैरामीटर्स भिन्न होना चाहिए
भिन्न रिटर्न टाइप्स होना मेथड को ओवरलोड नहीं करेगा
अतः इस method को हटाएँ और file को so करें
इस तरह से java में method overloading करते हैं
अतः इस tutorial में हमने सीखा
method overloading के बारे में
method को overload करने के बारे में
और method overloading के लाभ के बारे में
स्वमूल्यांकन के लिए एक सब्ट्रैक्ट method बनाएँ जो उस number को सब्ट्रैक्ट करें
इसे overload करें
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
इस पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह भारत सरकार एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
अब हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद